और यहा पर मुझे परछाई भी आते हुए दिखाई दे रही है और मुझे यहा पे धूप भी आते हुई दिखाई दे रही है।

ये तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में मुझे कुछ मैट लगी दिखाई दे रही है मैट के बीचम बीच मे मुझे रेड कलर के मैट भी दिखाई दे रही--

नीचे की और फूटबॉल जर्सी रखी हुई है। और यहा पे मुझे थेला के शुज भी दिखाई दे रहे है। विकी की बॉल भी राखी हुई दिखाई दे रही है।

येह यह तस्वीर को फ़िल्टर से खीचा हुआ है पीछे की तरफ कुछ मुझे ऑटोमैटिक टेलर मशीन भी दिखाई--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

बाल पड़े हुए दिखाईं दे रहे क्योकि एक नाई की दुकान है तो नाई जो भी बाल काटता है वो जमीन पे गिरते सामने की तरफ मुझे कुछ आईना दिखाई दे रहा आईने यहा पे मुझे तीन तीन दिखाई दे रहे।

काई बहुत सालों की जमी रहती है उनके ऊपर पानी गिरता है तो पेड़ बड़े होते जाते है और यहाँ पर मुझे नीचे कुछ लोग पिकनिक मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ बच्चिया भी दिखाई दे रही है यहाँ पे हसबंड वाइफ भी दिखाई दे रहे।